बस के पास एक व्यक्ति हाथ बांध के खड़ा हुआ है।

इसके अंदर से आज के दौर में गाड़ियां आती जाती हैं।

इस चित्र के अंदर हमें एक लाल कलर का बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है।

जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्लीनर्स --

नीचे से होटल का कलर व्हाइट है।

पत्थरों के ऊपर से पानी बहेता हुआ आ रहा हे।

यहां पर बहोत सारे पेड़ भीं दिख रहें हैं।

बहोत सारे बैनर भी लगे हुए हैं।

इस चित्र के अंदर एक मस्जिद दिख रही है।

इस चित्र के अंदर एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

यहां पर कुछ गिफ्ट आइटम भी रखे हुए हैं।

आस-पास बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

और आसपास मैदान है छोटा सा।

इसमें बहोत सारे खिड़कीये बनी हुई दिख रही है।

इस चित्र के अंदर एक क्रीम ड्रीम आइसक्रीम एन मोर का पार्लर दिख रहा है।

ऊपर ट्रांसपेरेंट शेड भी डला हुआ दिख रहा है।

कुछ चपबुक से चलने वाली नाव भी है और कुछ पेडल बोर्ड हैं।

एक व्यक्ति साइकिल चलाकर जा रहा है।

इस चित्र के अंदर हमें एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

इसके ऊपर इन्होंने अपना नंबर भी दे रखा है।

इस चित्र के अंदर हमें एक पीली इमारत दिख रही है।

यह वाइट कलर की इमारत है।

तालाब के ऊपर पेड़ दिख रहे हैं पेड़ों की छाया तालाब पर भी दिख रही है।

और यहां पर एक कार भी दिख रही है बहोत बारीकी से देखने पर लाल लाल कलर की खड़ी हुई--

इस चित्रके अंदर हमें कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं।

इस चित्र के अंदर हमें एक दुकान दिख रही है।

एक बच्चे का स्कूल बैग रखा हुआ दिख रहा है।

जिसके नीले कलर के दो तरफ दरवाजे हैं।

कुछ बच्चे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं।